ओ जैसे की हम देख रहे हैं के स्टे स्टेशनरी की शॉप यहाँ पर पेन पेंसिल रबर कटर नीला पेन हरा पेन लाल पेन और स्केच्च वागेरा सब मिलते हैं यहाँ पर।

आ जैसे कि हम देख रहे हैं सामने काफी सारी बिल्डिंगे नज़र आ रही हैं और छोटा सा एक आ तालाब भी है जहां पर काफी सारी गंदगी दिख रही है। एक पेड़ भी है। उस तालाब के बीचो बीच अब पानी तालाब का पानी जो है वो है वह आ रहा है।